साइड में हम लोग कुछ रोड डिवाइडर देख पा रहे हैं जोकि पीला और ब्लैक कलर का किया हुआ है यहाँ पर हम लोग एक टोल ट अ नाका देख पा रहे टोल टेक्स देख पा रहे हैं।

ऑरेंज कलर का है यहाँ पर और एक और कार्ड देख पा रहे हैं जोकि व्हाईट कलर कुछ व्यक्तियों को देख पा रहे हैं ऊपर में बड़ा सा बोर्डिंग लगा हुआ है कलर का बेरीकेट दिखाई दे रहा है।

सामने में एक बच्चे को लड़के को देख पा रहे जोकि ब्लैक ब्लू कलर का पेंट पहना हुआ हाथ में--

ने गुलाबी कलर का शर्ट पहना है और ब्लैक कलर का पेंट पहना है हम लोग यह एक चेयर देख पा रहे हैं जो कि ब्लैक कलर का एक पाइप देख पा रहे हैं जो कि पीला कलर --

जोकि व्हाईट और रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर एक बेंच भी देख पा रहे हैं सामने में हम लोग एक डस्टबिन देख पा रहे हैं जो ग्रीन कलर का है और लोहे का बना हुआ है।

इस फोटो के अंदर हम लोग रूम देख पा रहे हैं हम लोग यहां पर बहुत सारे टाइल्स देख पा रहे हैं दीवाल में लगा हुआ है।

कुछ एक बोरा देख पा रहे हैं नीचे का हम लोग जो फ्लोर है वो व्हाईट कलर का देख पा रहे हैं साइड में हम लोग कुछ सीरीज पेपर देख पा रहे हैं बोर्ड देख पा रहे हैं।

और इसको बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया हुआ है सामने हम लोग कुछ सोफा देख पा रहे हैं जिस--

मीटर देख पा रहे हैं कुछ हम लोग वायर इलेक्ट्रिक वायर देख पा रहे हैं कुछ कपड़ा देख पा रहे हैं जोकि--

एक व्यक्ति को देखा ग्रीन कलर का जैकेट पेहना ब्लैक कलर का पैंट पेहना हुआ है।

एक हम लोग स्टील का बना हुआ चमचा भी देख पा रहे हैं ये जल्दी मिठाई सब--

आज का स्लैब का अंदर देख पा रहे हैं पीछे में हम लोग एक महिला को देख पा रहे हैं जो कि ब्लैक कलर का टीशर्ट पहनी हुई है और ब्लू कलर का मास्क लगाए हुए है।

इस फोटो सामने मुहल्ले के रोड देख पा रहे जोकि व्हाइट कलर का बना हुआ--

नीला कलर का प्लास्टिक से बना हुआ डस्टबिन देख पा रहे हैं।

कुछ और अगला को देख पा रहे जोकि ब्लू कलर की गंजी पहना और ब्लैक कलर का शर्ट प--

पीछे का दीवाल ऑरेंज कलर

हम देख पा रहे हैं जो ब्लैक कलर का ऊपर सीलिंग का कलर हम लोग व्हाईट देख पा रहे हैं साइड दीवार का कलर भी व्हाईट देख पा रहे।

सामने में हम लोग एक झूला गिरा हुआ देख पा रहे है जो कि ग्रीन कलर का है।

व्हाइट कलर का स्वेटर पहनी हुई है ब्लैक कलर का पैंट पहनी हाथ में एक हम लोग उसके स्किपिंग रोप देख पा रहे।

छोटे छोटे कुछ पौधा देख पा रहे हैं यहाँ पर हम लोग सीरी देख पा रहे।

में कुछ हम लोग बोरा देख पा रहे हैं यहाँ पर एक व्यक्ति को देख पा रहे हैं एक इलेक्ट्रिक पोल देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक वार देख पा रहे हैं कुछ जंगल देख पा रहे हैं।

इस फोटो का अंदर हमलोग कॉन्स्टक्शन का साइड देख पा रहे हैं यहां पे देख के लग रहा है--

एक व्यक्ति को देख रहे हैं जो ब्लू कलर का जैकेट पहना हुआ है और ब्लैक कलर का पेंट पहना हुआ है एक व्यक्ति को देख रहे हैं जो यलो कलर का शर्ट पहना हुआ है।

अ पिंक कलर का शर्ट पहना हुआ है एक ने ग्रीन कलर का गेंजी पहना हुआ और व्हाईट कलर का पेंट पहना हुआ है सीमेंट का काम चल रहा है यहाँ पर।

सामने में एक पर्दा देख पा रहे हैं जो कि गोल्डन कलर का है।

इसका साइड में हम लोग बहुत सारे छोटे-छोटे टब देख पा रहे हैं जोकि ब्लू कलर --

एक मैरून कलर के व्यक्ती को देख पा रहे है जो की रेड कलर कपड़ा पेहना बहोत सारे कांच देखा पा रहे है साइड में।

यहां पर कोई एक अच्छे से शेप से कटा हुआ पेड़ देख पा रहे हैं सामने खजूर का है ये देख पा रहे हैं।

पीछे हम लोग एक ऑटो देख पा रहे हैं जो कि व्हाईट कलर का है ये बिल्डिंग देख पा रहे हैं जिसमें बहुत सारे बैनर लगा हुआ है एक में ब्लू कलर का एक में रेड कलर --

इलेक्ट्रिक पोल देख पा रहे हैं कुछ इलेक्ट्रिक वार देख पा रहे हैं एक गोल पोस्ट देख पा रहे हैं जो कि लोहा का बना हुआ है और व्हाईट कलर का है।

फोटो के अंदर में एक रूम का फोटो देख पा रहे हैं जिसका दीवार का रंग--

एक हम लोग प्रिंटर देख पा रहे हैं जो सफेद कलर का है साइड में हम लोग कु--

गुलाबी कलर का कपड़ा पहना है एक ने व्हाईट कलर का कपड़ा पहना हुआ है हाथ में एक ब्लैक कलर का हेलमेट लिए हुए है।

दीवार दीवार का कलर हम लोग व्हाईट देख पा रहे हैं व्हाईट कलर का ए_ सी_ देख पा रहे हैं।